मुझे इस फोटो में सामने को दो से तीन इंसान बैठे हुए दिखाई दे रहे आजू बाजू किधर है।

एंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सामने को--

सामने की ओर कुर्सियां बेंच रखी दिखाई दे--

मेडिकल गोल घूमता दिखाई दे रहा सामने की ओर इधर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही जो गाड़ी में लोहे के इस्तेमाल किया गया है नीचे की ओर।

इधर जगह की लगे दिखाई दे रहा आजू बाजू किधर है हरे भरे पेड़ पौधे--

कई सारी सीरियां वीडियां लग बनी हुई दिखाई दे रही हैं ऊपर की ओर दीवाल वाइट कलर की पुती हुई दिखाई दे रही हैं।